नाटक होने वाला है नाटक करने वाले आए हुए हैं यहाँ पर ढेर मनी कुर्सी आर लगाये हुए हैं यहाँ पर नाटक करने वाले स्टेज सजा हुआ है बहुत अच्छी तरह से और हीया पर जनता बहुत --

हीया पर एक बहुत बड़ा-सा समुन्द्र है।

इस स्थल पर एक बहुत बड़ा तालाब है तालाब बहुत ज्यादा गहरा है।

इसको किनारे-किनारे फूल तथा झाड़ी उगा हुआ है बहुत देखने में सुंदर लगता है। ईहाँ सब घुमने आते हैं दूर-दूर से लोग। यहाँ बीस रुपया टिकट लगता है और एक घंटा घूमते हैं और ऐश मोज करके जाते हैं।

ये एक बोहुत अच्छा कॉलेज है।